यहाँ पे पुलिस भी दिखाई दे रहे है एको अता नो कुलीत बस भी है जिस पे ऊपर भी आदमी चढ़े हुए ही बोहोत सारे--